बाहर सीलिंग फैन टंगा हुआ है। एक बेसिंग है जहां चार नल है ।

एक आदमी क जा रहा है। मास्क और चस्मा लगा के--

यहां बहुत सारे आदमी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं।

यह एक स्टेशन का चित्र है जहां दो टंकी एक स्ट्रेट लाइट एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है एक ट्रेन दिख रहा है।

ट्रेन में एक आदमी दिख रहा है उसमें एक पीछे नल में एक आदमी हाथ धो रहा है।

व्हाइट कलर का इंटा से घेरा हुआ है पौधा लगा हुआ है।

सामने एक वाइट कलर का बिल्डिंग है बगल में रेड और व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

बगल में लोटो चोको बाइक का पेटी रखा हुआ है।

गेट में एक पीला कलर का पोस्टर है।

एक आदमी के बैग है। बैग का कलर काला है।

यह एक टेम्पु स्टैंड हैं जहां बहुत सारे टम्पू खड़े हैं।

बगल में एक कैला का पेड़ है उसके बगल में एक घर है घर का कलर ब्लू और पिंक टाइप में है।

सामने एक बोतल रखा हुआ है पानी का पीछे टी_वी रखा हुआ है ब्लैक कलर का।

बगल में बहुत सारे पुतले खड़े हैं उसके पीछे बहुत सारा लाइट है एक ऑरेंज कलर का पोस्टर है ऊपर बहुत सारी लाइट है।

यह एक पहाड़ का चित्र है जहां पहाड़ के बीच से एक रोड आ रहा है रोड में एक पक्षी है ब्लैक कलर का।

एक आदमी रेड कलर और येलो कलर का बुक से पढ़ रहा है कुछ।

यह एक चिकन शॉप हैं।

उसके बगल में वाइट कलर का एक छाता टाइप में बना हुआ है।

उसके बगल में एक आदमी खड़ा है ब्लू कलर का जींस और वाइट कलर का टी शर्ट पहन--